पीछे की तरफ बोहोत ज्यादा घर है यह जो सामने की तरफ घर है ये हो चूका है लेकिन इसमें प्लास्टर वगेरा जो है वो बाकि है और यहाँ पे खिड़की और दरजे जो है वो भी अभी लगने बाकि --

ऐसी जगह पे जाने का मजा ही कुछ और होता है दोनों तरफ काफी ठंडी भी रहती है और कंजस्टेड --

इधर पे जो कलर हुई है वो डार्क ब्लू कलर हुई है और साइड में जोकि ब्लू कलर की हुई है इधर की जो छत है वो पूरा एक --